ये जो तस्वीर है तस्वीर मे एक मार्केट का तस्वीर दर्शाया गया है।

फ्लोर जो है वो शाइनिंग है लग रहा है टाइल्स लगा हुआ है।

का इमारत नजर आ रहा है जहां पे जो फैक्ट्री का जो है सेटिंग होता है वैसा लग रहा है।

दिन का समय है बाहर से रोशनी आते हुए अंदर में नजर आ रहा है यहां पे जो है।

पोस्टर पर बैठे हुए वहां पे लग रहा है बैंक है बै--

यह तस्वीर है तस्वीर में जो है एक पोस्टर दिखाया गया--

ये जो तस्वीर है तस्वीर में जो ये कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं एक बड़ा सा हॉल है।

अ जहां पे लाइट भी है सीलिंग फैन भी है बहुत सारे लोग बैठे हुए है लगरा --